ये ई-रिक्शा की दुकान है जहाँ पे ये नए अम्म लाल रंग के और नीले रंग का ई-रिक्शा खड़ा हुआ है।

और ये बेचने के लिए रखा गया है ताकि बाहर से लोग आये और उसको खरीदे।

और यह जो है रैक एक दुकान पे रखा हुआ है और यह पटाखे अनार बम लग रहे हैं।

ये जो है बाहर से कैफ़े कॉफ़ी डे की तस्वीर है खींची गयी हैं। कैफ़े कॉफ़ी डे का जो बोर्ड है वो बैंगनी है।

और यहाँ कॉफ़ी मिलती हैं| बहुत ज्यादा टेस्टी और जाएकेदार कॉफ़ी होती है यहाँ की मज़ा आता है पी के ।

ये जो है ग्रोसरी स्टोर है। आ जो खाने पीने का सामान जहाँ पे बेचा जाता है।

और यहाँ ए.सी. लगा हुआ है। यह बहुत लुक्सुरियस बना रखा है और यहाँ पे खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

यह एक खाली इमेज है जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है|

और उस स्क्वायर के अंदर सर्कल और आ दो पहाड़ हैं एक पहाड़ बड़ा है और एक पहाड़ छोटा है।

यह दृश्य है इस फोटो में अमरूद को पकड़े हुए एक हाथ दिखाया जा रहा है और ये जो है अ अमम अमरूद की खेती लग रही है जहाँ पर अमरूद उगते हैं।

यह जो तस्वीर है एक पिंजरे के अंदर की तस्वीर है जौ एक जो तोते होते हैं वो तोतों की तस्वीरें हैं।